ये एक घर है यहां पर बच्चियां--

ये एक स्वीट हाउस का दुकान है जहां पर बहुत सारे मिठाई रखे हैं और काउंटर में--

लाइट के खंबे लगे हुए हैं और एक--

और कुछ इधर उधर का दुकान है खिलौने का।

ये बहोत बड़ा इसकुल है जहां गणतंत्र दिवस मनाया मनाया जा रहा है बच्चे --